सामने ऑरेंज और ब्राउन कलर का टेबल है।

पीले रंग की कुर्सी में बैठे हुए नजर आ रही है।

सामने ब्लैक कलर की टेबल बना हुआ है जिसमें एक आदमी बैठे हुए नजर आ रहा है एक डिवाइडर बना हुआ है भूरे रंग का।

सामने एक शॉप नजर आ रहा है। कांच के कपबोर्डस बने हुए हैं। ग्रे कलर का टीना नजर आ रहा है।

खंबे लगे हुए हैं और बड़े पेड़न लगे हुए नजर आ रहे हैं।

रोड में गाड़ी जाते हुए नजर आ रही है कुछ गाड़ी खड़े हुए हैं।

आई साइड में बड़े बड़े खंभे लगे हुए दिख रहे हैं।

जो डिजाइन बने हुए हैं। सामने सीढ़ी नजर आ रही है। ग्रील बना हुआ है। कुछ लोग ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ कबड बने हुए हैं नीचे सीढ़ी के--

यहां भूरे रंग का टेबल बना हुआ है टेबल के ऊपर लैपटॉप माउस पेन एक पेज और--

अंदर एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है चेयर के ऊपर पिंक कलर की एक टॉवेल लगी हुई है।

सामने येलो कलर का पंडाल नजर आ रहा है जो फ्लावर से सजा हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर एक ग्रील बना हुआ है जिसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं छोटे छोटे--

खिड़की बनी हुई है ब्लैक रंग की सामने नाली है एक खंभा बना हुआ नजर आ रहा है।

कैमरा है जिसमें लोग फोटो खींचा रहे हैं हरे रंग की दरी बिछी हुई है कुछ फ्लावर नजर आ रहे हैं।

ऊपर व्हाइट रंग का बोर्ड लगा है जिसमें समय लिखा हुआ नजर आ रहा है।